और गन्ने का र ईख देख रहे हैं।

और बहोत सारे बच्चे देख रहे हैं इसमें बैठे हुए हैं और जेंस भी हैं।

और चारों साइड से घिरे हुए येलो व्हाइट कलर के--

औ पुल के नीचे बहोत सारे पानी भी रुकी हुई जमी हुई है।

और इसमें बाहर बरंडे टाइप में चेयर लगे हुए हैं।

और बहुत सारे लेडिस दिख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और उसमें बाहर दो तीन बाइक खड़ी हुई है।

और इसके बगल में एक टसफार्मर है बहोत बड़ा।